एक कप में काला और हरा रंग का प्रिंट हैं एक में का प्रिंट हैं।

पार्क जैसा बना हुआ हैं टेंट पिंक और व्हाइट रंग का टेंट लगा हुआ हैं।

एक मकान दिखाई दे रहा है। यहां पे कुछ पौधे हरे रंग के पौधे हैं कुछ पीले दिखाई दे रहे हैं।

उस चौकी रखी हुई है नहाने वाली कॉपी का एक बंडल रखा हुआ है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यह एक जिम की जब तक फोटो है यहां पे एक एक लड़का जिम कर रहा है पीछे से जिम ट्राय कर रहा --

पे वो एक सरिया से वो कर रहे हैं एक लड़का खड़ा हो रखा है सब लोगों ने पीले रंग की हैंडल पहन रखी है मौसम बड़ा सुहावना --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह एक क दुकान है यहां पे चिप्स के पैकेट लटके हुए है लेज़ के पैकेट है कुरकुरे दाल नमकीन

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पे एक अ तलाब जैसा है पीछे से एक वोट दिखाई दे रही है दोनों तरफ पहाड़ दिखाई दे रहे है ।

तीन लेडीसे हैं एक आदमी है तीन लेडीसे पानी में खड़ी हो रखी हैं।

पीछे से एक ये छोटा सा एक एसी लगा हुआ है वाशबेसर है ब्लैक कलर की कुर्सी है रेड कलर का एक गद्दे में वो डाल रखा है --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे एक हिरन खड़ा हो रखा हैं।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर दो पहाड़ या पत्थर के पहाड़ टाइप के बने हुए हैं एक --